यह अ वर्कआउट डिपार्टमेंट एक्सरसाइज वाला डिपार्टमेंट दर्शाया गया है।

गली के कोर अ सड़क के किनारे पे बनाई गई हैं इसके साथ--